अंडरगारमेंट के लिए युस किये जाते हैं।

ब्लू लोटस है यह पांच मंजिला होटल है जो की --

समाधी पर हमें एक उल्टी --

चंदा मामा है उसके नीचे एक मोंटी कार्लो का शोरूम है।

यहाँ पर अलग-अलग टाइप के कपड़े आते है जो की धुलने के लिए आते है।

लेकिन यह दृश्य एक साइंस एक्सहिबिटिव का है जहाँ पर --

स्कूल की है। एक लाल एक वाइट रंग की है। ये सब अलग है।